पार्क में बहुत सारे आदमी हैं।

ये तो यह एक फूलो का दुकान है।

ये तो ये दिखाई दे रहा है।

मंदिर मे बहोत सारे प्लस का लोगो लगा हुआ है।

अंदर में एक बिल्डिंग भी है वाइट कलर की।

बाहर में एक बाईक खरा हुआ है।

भारत का जो तिरंगा वह भी भी दो दिखाई दे रहा है।

ये तो डिजिटल सेवा केंद्र है।

यह तो शायद इलेक्ट्रिक जंक्शन होगा।

जंक्शन में एक आदमी क्या काम कर रहे हो उधर में भी और एकदम में घुस रहा है।

ये तो एक रेलवे का ब्रिज बना रहा है।

वो किसलिए खड़ा हुआ है मुझे भी मालूम नहीं है।